इस ग्राउंड में बहुत सारे विद्यार्थी दिख रहे हैं।

यह दिन के समय का तस्वीर है।

इस दुकान के ऊपर ए_आर ग्रोसरी लिखा हुआ है।

इस तस्वीर में बहुत सारे गुलाब के फूल हैं।

यहां पर कुछ पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

इस दुकान के बाहर बहुत सारे फूल रखे हुए हैं।

यहां पर एक पोस्टर में रोहन चाय सेन्टर लिखा हुआ है।

यहां पर बहुत सारी कुर्सियां दिख रही है।